फोटो में सामने की साइड कुछ कुर्सियां भी बिछी दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में काफी सारी खाटे पड़ी हुई दिखाई दे रही है।

यह फोटो किसी रेलवे स्टैंड से लिया गया है।

और इस कप पर कुछ कॉफी के बीज छपे हुए हैं।

इस फोटो में सामने की साइड एक भगवान जी की मूर्ति रखी हुई है।

जिसमें एक व्यक्ति दिख रहा है छत पर काफी सारी लाइटे लगी हुई हैं।

यह फोटो किसी छोटे से नदी से लिया गया है।

और एक कुर्सी भी पड़ी है छत पर लाइटें लगी है।

इस फोटो में एक डॉक्टर कुर्सी पर बैठा है।

दो ए_सी भी लगी दिखाई दिखाई दे रही है।

साइड में भी कुछ सामान है कुछ वायर दिखाई दे रहे हैं।

के साइड में कुछ घर जैसा भी दिख रहे हैं।

इस फोटो में एक बड़ा ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

साइड में कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंगे दिखाई दे रही है।

इस फोटो में सामने की साइड दो लड़के खड़े दिखाई दे रहे है।